जैसे की हम देख सकते है इस चित्र मे ये एक मकान हैजिसका नाम है परमानन्द हॉस्पिटल ।

आप देख सकते है इस चित्र मे की ये बहुत बड़ा मैदान है जहां पे लोग खेल रहे है क्रिकेट खेल रहे है।

कुछ लोग अंपायर बने है आप देख सकते है पीछे मे बहुत सारे छोटे बड़े घर हैं।

कुर्सियां है जहां पे लोग बैठे हुए हैं पीछे पीले कलर का बोर्ड है और ये जो घर है उजले कलर का है।

लाइट चमचमाती है और बहुत सारे लोग खड़े है और भी बहुत सारी चीजे हैं।

शेरवानी बिक रही है आप देख सकते है नीचे कार्पेट जो है लाल रंग का है पीछे के दिवार जो है --

देख सकते है इस चित्र मे की ये बाइक है जो काली कलर की है उसका हेलमेट आगे है।

इ सकतें हैं इस तस्वीर मे की यहाँ पे बहुत सारी दुकने एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की है।

और ऊपर मे बहुत सारे डमी है बच्चों के कपड़े मिलते है बड़ों के मिलते है और भी बहुत सारे चीजे मिल--

और ये इसकी जो कुरिसीय है वो--

देख सकते है कुछ लोग बैठ के उन्हे देख रहे है और यहाँ पे टेबल है कुर्सी है।